बच्चों को सुनता है अ ऊपर में --

अअ ऊपर में है और जंगल में है नीचे में प्लास्टर करा है।

वो वहां पे है बालू है माटी है है।

वह भान में बहुत सारा सामान है |

क्या सामान लेगा कैसे कैसे सामान लेगा बहुत सुंदर --

और वहाँ पे बैंगनी कलर का बस्ता है।

देवघर में देवघर में एक है |

लड़की के सिखाता है ऐसे करके ऐसे करोगी।

बहुत चाय पिए के गिलास है कॉफ़ी के गिलास है।

दो-दो गाड़ी में प जाता है।

देखेह वहाँ पे सीसा लागाता हेय ऊपर में।

है उधर में पूरा बड़ा है |

एक कुर्सी है लाल और है।

बिरयानी देता है |

हॉल है |

और कितना गन्दा तरीका से बात करेगी किसन बात करूंगी

ये लोग पीछे एक लड़की को देखता है फेस केसन

लड़की लोग लहंगा लेता है बाजार में बहुते सस्ता है।

यहाँ पे है।

वहाँ पे गाछ है।

ग्राउंड पे मैच खेलता है लड़की है बॉल में --

ट्युबलाइट बल्ब है यहाँ पर किसी ने